और दरवाजा भी बहोत ही पुराना ढंग से बना हुआ है जो की बहोत राजा महाराजा के सौ साल पहले सौ हजार साल पहले का प्रतीत होता है। इसमें एक लोहे का गेट लगा है।

ये एक लड़की है जो दशहरे का पिक्चर्स में एक दुर्गा माँ और राक्षस का पिक्चर दिखाई दे --

लाइन से लगाए हुए है और आप भी जहां जाते है तो जाकर अप और उधर भी कुछ रोड है सा --